इस इमेज में मुझे एक--

सारे कारखाने में खिड़की और दरवाजे रखे हुए नजर--

यहां से जिसने बहोत सारे लोग स्लाइड पर नज़र--

रहे है यह देखने में बोहोत सुंदर--

थे यह देखने में बहोत ज्यादा अच्छे लग--

इस ईमेज में मुझे एक बहोत सुंदर बिल्डिंग दिख--

इस इमेज मे मुझे एक बहोत बड़ी नदी दि--

है यह देखने में बहोत ज्यादा सुंदर लग रहा--

दुकान दिख रही हैं। यह देखने में--

है उसमें एक बेड भी रखा हुआ--

एक स्कूल दिख रहा है जिसमें टीचर अपने स्टूडेंट --

ईमेज में मुझे एक चर्च --

हे चर्च में शादी का काम--

दिख रहा है जिसमें बहोत सारा हॉस्पिटल का--

है यह बहुत ज्यादा सुंदर है।

रही है नदी में बहोत--

बहोत बड़ा मार्केट दिखाई दे रहा--

बड़ा ऑफिस दिख रहा है यह--

इस इमेज मे मुझे एक--

है यह देखने में बहोत ज़्यादा सुंदर लग रहा है।

हुए दिख रहे थे यह देखने में--